ई पार्क ह एइजा लईका खेले आवेन मस्ती करे आवेन पिकनिक मनावे आवेन। एइजा बुजुरुग लोग सुबह-शाम टहले आवेन।

हर तरह के सरकारी पोस्ट आना-जाना सब यही विभाग से होला।

ई बैंक ह। एइजा लोग पईसा जमा करे आवेला पईसा निकाले आवेला आपन खाता खोले आवेला। खाता खोल के एमे पईसा जमा करेला और जब चाहे निकाल सकेला।

इन लोग के रोज के रोज मजदूरी मिलेला वही से इन लोगन के भरण पोषण होला।

शादी के गेट ह जोन दुवार पे सजेला जोन देखले में बहुत अच्छा लागेला लोग आवेला त एकर तारीफ करेला पहले घुसते इ गेटवे देखेला।

लोग उन लोग के देखता हंसता मजा लेता। फिर खाना-पीना बाराती को होई।